ये भी बच्चों का स्कूल है जहा बच्चों के लिए स्केच बनाय गई है पेंटिंग बनाई गई है कार्टून्स है स्कूटी है स्कूल है पोस्टर्स है डोर है।